नीचे इसके फर्श येलो कलर का है पीछे इसके छत जो है वो सफेद रंग की है।

यह तस्वीर मे एक मंदिर दिख रहा है जो सफेद रंग का है जिसके पिलर ऊपर से सफेद और नीचे से लाल है पीछे एक गुलाबी रंग की बिल्डिंग दिख रही है पीछे की तरफ पेड़ नजर आ रहा है सामने भी एक पेड़ लगा हुआ है पीछे की तरफ आसमान दिख रहा है।

पीछे आसमान नजर आ रहा है ये रात के समय लिया गया तस्वीर है जिसमें आसमान काला दिख रहा है इसके साइड में हरे रंग का पेड़ दिख रहा है सामने इसके दरवाजा है नीचे काले रंग के पिलर नजर आ रहें हैं।

यह एक कपड़ों का शोरूम है कपड़ों का स्टोर जिसमे पुरे लाल रंग से डेकोरेट है यह। इसमें उपर लाईटे लगी हुई है।

ऊपर सफेद रंग का छत है साइड में इसमें एक दुकान बंद दिख रही है।

यह तस्वीर में एक बिल्डिंग दिख रही है जो पीले रंग की बिल्डिंग है इसके नीचे एक शोरूम नजर आ रहा है जो गाड़ियों का शोरूम है उसके नीचे लाल रंग के पिलर दिख रहें हैं ऊपर उसमें सफेद रंग का बोर्ड है जिसमें लाल रंग से लिखा हुआ है।

छे इसमें लाल और सफेद रंग का बोर्ड लगा हुआ है इसमें बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है अंदर इसमें लाल रंग के कुछ स्टिकर्स दिख रहें हैं।